जिस पर क्रीम कलर और ग्रे और व्हाइट कलर का पेंट हुआ है।

सामने एक बहोत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और वहा पर छोटे-छोटे बोर्ड लगे हुए है।

सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर एक मोटरसाइकल खड़ा है और एक ट्रक खड़ा हुआ है।

और वहां पे दो चार आदमी भी खड़े हुए हैं।

और एक आदमी सरियों से कुछ काम कर रहा कर रहा है।

सामने एक गिटार की दुकान है।

वहां पर हनुमान जी की मूर्ति और माता की मूर्ति शिव शंकर का भी मूर्ति है और एक पीछे से पहाड़ सा भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बगल से सीढ़ियां हैं।

एक आदमी हाथ में गिटार लेके खड़ा हुआ है।

जैसे लोहे के नट और रिच पॉने और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है।

काफी सारे लोग कुछ खा रहे हैं कुछ बैठे हैं कुछ खड़े है और वहां पर मेज भी है।